मुझे इस तस्वीर में कच्चा घर दिखाई दे रहा है।

सामने में प्लीज कीप दिस एरिया क्लीन का बोर्ड भी लगा हुआ है।

जमीन पर छोता छोता पत्थर भी बिखरा हुआ है।

मुझे तस्वीर में बहोत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रहा है।

सामने में बहुत सारा गाड़ी रखा हुआ है।

दीवार पर बहुत सारे स्विच बॉक्स भी लगा हुआ है।

सामने में एक स्टील गेट भी लगा हुआ है।

कोने में बहुत सारा स्कूटी और बाइक भी रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक लंबा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

जो शीशे के उस पार से दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का बहुत सारा खिड़कियां भी दिखाई दे रहा है।

आसपास बहुत सारे पेड़ पौधा भी लगा हुआ है।

कोने में एक टीना का घर भी दिखाई दे रहा है।

जमीन पर बहोत सारे गिट्टी भी पड़ा हुआ है।

सामने में कई सारे टेबल्स और कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।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

सामने में एक चप्पल भी पड़ा हुआ है।

और बोर्ड के उस पार बहोत सारा फेंसिंग भी लगा हुआ है।

जमीन पर तीन वाटर बोतल भी रखा हुआ है।

आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ भी लगा हुआ है।

सामने में दो काला कुर्सी भी रखा हुआ है।

टी_वी भी लगा हुआ है और सामने वाले टेबल पर एक पानी का बोतल भी रखा हुआ है।

पीछे मे एक ब्लू कलर का सिंटेक्स भी रखा हुआ है।